घर के किनारे में बड़े बड़े पेड़ और फूल दिखाई दे रहा है।

रस्ता के किनार में हरा रंग से घास भी दिखाई दे रहा है।